यहां पर लड्डू भी रखे हुए हैं प्लेट में--

नीचे में कुछ बस्ता में है जो कि पता नहीं चल रहा है।

अगरबत्ती भी जलाया हुआ है।

साइड ही में बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगा हुआ है।

मेजरिंग टेप भी दिख रहा है।

गाड़ी दो गाड़ी कई सारे गाड़ी दिख रहा है जो की पार्किंग करके रखा हुआ है।

मुझे सीनरी दिख रहा है एक सुंदर सा जिसमें कई सारे पेड़ है।

मुझे यहां इंसान खेलते हुए दिख रहा है।

नीचे सारी जगह नीला कलर का फ्लोर दिख रहा हैं।

साथ ही में फ्लावर पॉट्स भी रखा हुआ है।

मुझे यहां पे सारे चीजें दिख रहा है जैसे कि निशि का ऑर्नामेंट्स दिख रहा है कई सारा माल दिख रहा है।

साइड में मुझे एक फ्लावर पॉट दिख रहा है और--

इसमें कई सारे सामान दिख रहा है मुझे जैसे की टेबल फैन बेसीन पाइप।

इसे हर एक एक जगह पर सजाया हुआ दिख रहा है जिस--

ट्रेडर्स लिखा हुआ दिख रहा है और एक स्कूटी खड़ा हुआ दिख रहा है।